सामने एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने नीले कलर का कुर्ता पहना हुआ है हाथ में एक धागा और कंगन भी हैं ।

उसके बगल में एक गमला रखा है जिसमें पोधा लगा हुआ है पीछे लाइट जल रही हैं।

यहाँ पर एक छोटी सी झील दिखाई दे रही है झील में पानी भरा हुआ है और साइड से--

से पुता हुआ है और यहाँ पर एक गोल आकार का भी एक गेट दिखा रहा है जो सीमेंट का बना हैं ।

यहाँ पर एक रूम बना है रूम का दरवाजा खुला हुआ है खिड़की भी लगी है।

यहाँ पर एक बड़ा सा मंदिर बना है और मंदिर जो है वो सफेद कलर का है।

एक पानी का कैंपर रखा हुआ है दो लाल कुर्सिया दिखाई दे रही है।

और उसके मुंह के ऊपर रस्सी--

कंडक्टर -वनडक्टर होगा कितना अच्छा इ दिख रहा और --

गले में पहनने वाले बने हैं जो काफी कलरफुल है एक बुक रखी दिखाई दे रही है।

और यहाँ पर लोहै के पानी की टंकियां रखी हैएक बड़ा सा पाइप है नीचे मिट्टी पड़ी है।